इस तस्वीर में मुझे एक बस दिखाई दे रही है।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

यहां मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा हैं।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

यहां मुझे बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है।